यहाँ पे जले केक भी हैं।

यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं।

यह यह माहिया फील्ड काफी सुन्दर भी है।

यह सामान काफी सस्ती मिलती है।

यहाँ पर तरह-तरह के खेल खेले जाते हैं।

इस बगीचे में बहुत से पेड़ हैं ।

यह बैनर शहीद चन्द्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार का है।

यह एक टेबुल है इस टेबुल पर एक प्लेट रखी गई है ।

यहाँ पर अमीर आदमी बुक करते हैं।

इस में न इस में अ घर के किनारे पर--

यह दूकान काफी बड़ा है।

इस एयर में ऐ.सी भी लगे हुए है।

यहाँ पर हफ्ता में एक दिन डॉक्टर आते हैं।

यहाँ पर सभी बच्चे के पास किताब कॉपी कलम है।

रूम है। यह रूम काफी--

इस दुकान में तरह-तरह के समान भी हैं।